और एक आदमी गाड़ी को धो रहा है।

और तालाब के बगल में एक मंदिर भी है।

इस तालाब में बहोत सारे पानी है।

दो कार का कलर है सफेद और एक कार का कलर है ब्लैक ।

अलमारी को खोलने के लिए पकड़ने वाला भी बनाया हुआ है।

और रूम में एक दिख रहा है।

और सामने एक पंडित भी दिख रहा है।

और ऑफिस में तीन कुर्सी लगाए गए हैं।

कुर्सी के सामने टेबल भी लगाया हुआ है।

दुकान के सामने तीन कुर्सी भी रखी गई है कुर्सी का कलर है लाल।

और इस दुकान में एक आदमी दिख रहा है और दुकान का गेट बहोत ही चौड़ा है।

जिसमें पांच आदमी चहढ़ते हुए दिख रहे हैं।

और उस कंपनी में बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग हैं।

यह एक कैमरा दुकान दिख रहा है।

रैक के बगल में गणेश जी का पिक है।

और साइड में दो लोग खड़े हैं।

तो बैंक के सामने तीन सीढ़ियां भी बनाई गई है।

और उन लोग सेफ्टी के साथ काम कर रहे हैं।

यह एक किराना दुकान जैसा दिख रहा है।

और सीढ़ी के बगल में रेलिंग भी है।

दुकान में दो कुर्सी रखी गई है कुर्सी का कलर है लाल और एक काउंटर भी है साइड में--

जिसमें बहुत सारे मुर्गियां रखे हैं।

एक औरत फोन पे बात कर रही है।

और सामने रैक भी लगाया गया है।

एक में बहोत सारे बैग रखे हुए हैं।